यह घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे और अपने काम करते होंगे यह घर के नीचे मे मार्बल टाइल्स लगाये गए है और यह घर--

मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए है और अपनी काम को कर रहे है यह भगवान बहुत ही ज्यादा अच्छे भगवान है।

यह एक लाईब्रेरी है जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ हैं।

यहाँ पर बहुत महिलाए है सिर्फ महिला है और आगे में और पीछे में सिर्फ पीछे में पुरुष है।

यह एक पोल्ट्री फॉर्म है मुर्गे का फार्म है जहाँ पर मुर्गे को बेचा जाता है।

यह एस. बी. आई बैंक है जो बैंक छतीसगढ़ के एक जगह पे स्थित है जहाँ यह मेरे घर से करीबन --